टेबुल है कुर्सी है बाउल है पंखा है एक आदमी है डब्बा है पानी का।

कुछ इ बुखार का दवा है बहोत सारे दवाई है इलेक्ट्रिक पाउडर है लाइट है बॉल है।